वहां पे एक दुकान है जो यहां पे एस नाम है।

जो यहां पे वेंडिंग से गाढ़ा गया है और यहां पे ऑफिस रूम लिखा है।